आगे पानी की बोतलें रखी हुई पड़ी है और दीवार लगी हुई है नीचे कुछ कुर्सियां पड़ी हैं ब्लैक कलर की इधर कुछ लगे हुए हैं।

यहां सामने यह एक रूम है यहां ए_सी लगी हुई है पर्दे लगे हुए है ऊपर पंखे लगे हुए है।

और घर के ऊपर यल्लो कलर किया हुआ है घर के उधर साइड कोने के साइड दो पेड़ लगे हुए हैं जो बहोत गहरे गहरे पेड़ हैं।

इस तस्वीर के अंदर ये एक रूम है रूम में पंखे लगे हुए हैं सामने ए_सी लगी हुई है।

आगे बहोत ही बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं जो दो तीन चार पांच मंजिल मंजिल तक ऊंचे हैं।

यहां पर एक आदमी बैठा है फोन से बात कर रहा है जिसके ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए सर में व्हाइट कलर की टोपी पहनी हुई है।

बाहर एक छोटा सा पौधा उगा हुआ है और इधर एक रूम बना हुआ है उसके आगे मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है।

कुछ दुकानें बनी हुई है पेड़-पौधे लगे हुए हैं पेड़ हैं बहुत ही डिगी-डिगी लंबे-लंबे लगे हुए हैं।

और अ बीच में से सड़क निकल रही है आगे से बहोत बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं।